इस मूर्ति के पीछे मुझे कांच से बनी एक दीवार भी दिखाई दे रही है।

इस कंकाल के पीछे मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

ये गाय घास खा रही है।

इन पौधों के पीछे मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इन पेड़ो के पीछे मुझे कुछ बिल्डिंगस भी दिखाई दे रही है जो कि ब्लू और व्हाईट कलर की है।

इन लोगों के पीछे मुझे कुछ डिजाइन्स बनी हुयी दिखाई दे रही है जो की ग्रीन और रेड कलर की है।

इस दीवार पे मुझे व्हाइट कलर का स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

छोटे-छोटे पौधे रखे हुए है इन पौधो के पीछे मुझे गेट दिखाई दे रहा है।